महिलायें पूजा करती हुई नजर आ रही है| यहाँ घाट पे ये कोई-कोई पूजा हो रहा है| नदी के किनारे बहुत अच्छे से सजाया हुआ है घाट को बहुत से बैलून और रिबन से सजाया हुआ है।